किसी बैंक संबंध ही काम होता होगा।

ये कोचिंग संस्थान लग रहा है।

ये किसी मंदिर का सीन लग रहा है जिस पर पेड़ का जो --

सारे बाजा बंधा हुआ है और मंदिर भव्य लग रहा है देखने में और अच्छा भी है साफ़ सुथरा भी किया गया है।